यह सामान लगे हुए काम कर रहे हैं यहां देख सकते कितनी सामान रखी हुई है ढोलक मजीरा ये--

कहते हैं सोने की चिड़िया जिसे भारत देश में कहा जाता है।

यात्री लोग उस बस से उतरे हुए है।

अपना काम करने के लिए जा रहे हैं।

यहां पर दो टी_वी लगी हुई है।

ये यहां पर जैसे कि कोल्ड डिंक मिल सकती है और टी_वी लगी है।

बैग पकड़े हुए हैं और आदमी और यहां पर ढेर सारी दोपहिए की गाड़ी खड़ी हुई हैं।

यह एक पेट्रोल टंकी है।

यहां पर चार पहिए की गाड़ी खड़ी हुई है कितनी सारी।

और कुछ आदमी खाना दे रहे हैं।

जैसे कि चॉकलेट हुआ और भी बिस्किट है माजा है बहोत सारी चीजे हैं।

ये क यहां पर छत की मरम्मत हो रही है।

एक लड़की भी है और एक माता रानी जी की मूर्ति रखी हुई है।

ये फूल पर अर्पण कर रहे हैं और जल चढ़ा रहे हैं आशीर्वाद ले रहे हैं।

जो लड़कियां और लड़के दोनों ही बैठे हैं।

ये दो लोग बना रहे हैं चार पांच लोग अंदर हैं।

और कितने मतलब यहां पर पेड़ लगे हैं आस पास शुद्ध पानी है?

यहां पर ये पेड़ में जो पेंटिंग होती है ई मतलब इसको जहाँ तक मैं जानती हूँ तो इसे सरकारी पेड़ बोलते है।

पटाखो की तरह लाइटे लगी है ब बहोत देखने में बहोत ही अच्छा लग रहा है बहोत ही अच्छा--

और दो आदमी काम करे हुए है अ दो आदमी बैठे हुए है।

और यहां पर कुर्सियां परी हुई हैं इन लोगों को बैठने के लिए ताकी बैठ सकें।

यहां पर आग जब लगती है तो उसे बुझाने के लिए वो सिलेंडर भी रखी हुई है।

के आसमान देखो कितना अच्छा दिख रहा है कितना अच्छा नजारा है।

यहाँ पर अंदर आने का गेट लगा हुआ है।

वहां पर दो औरते बैठी हुई हैं एक आदमी।

यहां पर टेबल लगी हुई है कुर्सियां लगी हुई है बहोत ही अच्छे से गोलाई में--

यह भी एक स्टेशन ही है।

यह यहां पर देखो कितने ढ़ेर सारे आदमी हैं ढोल नगीड़ा बाजा वोजा ढोल लिए हैं बजा रहे हैं।

और वहां पर घर भी है यहां पर देख सकते हैं रास्ता गया है एक इधर साइड लेफ्ट साइड एक राइट साइड ।

दर्शन करने आया है कि इसका वक--

यहां पर दो पहिए की गाड़ी लगी हुई है यहां अगर मंदिर ही है।

य ये देखो यहां पर घंटियां लगी हुई हैं बजाने के लिए और--

यहां पर देख सकते हैं सोफा रखे हुए हैं।

और यहां पे पोस्टर लगा हुआ है।

जिसे एक स्टेशन पर एक जो लोग चढ़ते उतरते हैं वहां पर ज्यादा भीड़ लगती है जैसे दिल्ली बुम्बई ये सब चीजों में होता है वैसे ही कुछ लग रहा है।

यह एक स्कूल है जो खूब बड़ा स्कूल है यहां पर डिग्री कॉलेज या फिर कुछ भी है।

बहोत ही बड़ा बहोत ही सुंदर हरियाली सी है।

के पेड़ भी हैं फूल भी उसमें लगे हुए हैं।

वहां पर वो देखो ऊंचा बहुत ही ऊंचे पर महल टाइप में बन वो बना हुआ है।

एक आदमी बना रहा है खाने के लिए। ओ ऑर्डर कर रहा है।